ये पूजा का फोटो है ये छठ पूजा का जो हिन्दू लोग बिहार में बहुत फेमस पूजा है छठ पूजा यहाँ पे ये लोग छठ पूजा है तो ये लोग पूजा ही कर रहे है।

ये ये इमामबाड़ा की साइड में ये मुसलमानों का मोहर्रम जब आता है तब ये ताजिया है मोहर्रम में लोग बनाते है तबका और ये जो है ये --

ताजिया देख रहे है ये बहोत बड़ा ताजिया है ये मुसलमान में सिया लोग सबसे ज्यादा मोहर्म बनाते हैं तो ये उन्हीं का मंबारा है क साइड का ये पिक्चर है मुम्बरा का जो ताजिया लेके जा रहे हैं।